एक्स्सरसाइज़ भी कर रहा है दूर दूर तक कुछ दिखा नहीं रहा है लेकिन एक्स्सरसाइज़ करने की मशीने भी रखी हुई है तल्सेल भी नहीं मिली।

ये जे कोई टैक्सी है और अ आदमी भी खड़े हुए है जो --

यहाँ कुछ दीवाले भी दिख रहे हैं कुछ पाईप भी लगे नीचे लेंटर भी है।